यह मॉल बहुत ही बड़ा है और इसका इस मॉल को बनाने मे बहुत सारा पैसा खर्च किया गया होगा और यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते है।

बहुत सारे मजदूर यह ढलाई में काम करने के लिए आते है और काम करते हैं।

यहाँ पर एक लोग है जो पिल्लर को बांध रहे है और और इसमे पिरन मे रट बांध रहे है ताकी यह पिल्लर जो है मजबुत रहे।

यह ग्राऊंड लोग अ आते है क्रिकेट खेलते है फुटबॉल खेलते है तरह - तरह के खेल खेलते है।

यहाँ पर बहुत ही बड़े-बड़े लोग रहते हैं।